उसमें एक छोटा मंदिर है जिसका रंग सफेद है।

यह एक मकान है मकान का रंग पीला है मकान के सामने बहुत सारी मोटरसाइकिल खड़ी हुई है।

यहां एक मकान बन रहा है इसके अंदर बालू का ढेर रखा हुआ है।

पड़ी हुई है एक आदमी चुनाई कर रहा है।

यह एक मकान है। मकान का रंग नीला है। ऊपर सरिया लगी हुई हैं।

एक आदमी लैपटॉप चला रहा है कमरे में बोर्ड लगा हुआ है।

मकान के पास एक खंभा लगा हुआ है मकान का गेट लोहे का है।

यहां बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है बिल्डिंग्स में खिड़की है।

उनके चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है पड़ोस में बहुत सारे बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

के ऊपर कुछ लिखा हुआ है जल संस्थाप ललितपुर उत्तर प्रदेश।

एक लड़की सफेद रंग का कपड़ा पहने हुए खड़ी है दीवाल है दीवाल का रंग सफेद है।

खंभे से तार निकले हुए हैं एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है।

यह एक सब्जी की दुकान है जिसमें बहुत सारी सब्जियां रखी हुई हैं गोभी रखी हुई है टमाटर रखे हुए हैं।

पीछे लाइटें जल रही हैं एक काले रंग की कुर्सी पड़ी हुई है पीछे एक कांच लगी हुई है।

यहां पे पानी बह रहा है पानी के अंदर बहुत सारे हरे पेड़ लगे हुए हैं।

ऊपर से झरना गिर रहा है आसमान आसमानी है जिसमें सूरज चमक रहा है।

एक झोपड़ी सी बनी हुई है जिसका रंग पीला है उसके ऊपर एक झोपड़ी पड़ी हुई है।

डिब्बे में नमकीन रखी हुई है पीछे काउंटर बना है जिसमें बहुत सारे डब्बे रखे हुए हैं।

बल्ब एक टंगा हुआ है ऊपर परदे लगे हुए हैं।

बहुत सारे गुलाब हैं जिसका कलर लाल है।

यह एक जंगली हिरन है जिसका रंग काला है।